कितना मस्त लग रहा है कृष्णा भगवान का फोटो बहुत मस्त लग रहा है क्यों कृष्णा भगवान के मूर्ति है भाई --